उसमें बहुत से शब्द लिखे हुए हैं यहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे लाइटें जली हुई और बहुत सारे डेकोरेट किया हुआ है।

जो पुतले के अंदर प्रदिसित किया गया है।

यहां पर बहुत सी लाइटें जली हुई है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे--

नदी के अंदर एक खंभा दिखाई दे रहा है।

सामने एक चेयर रखी हुई है।

गाय का रंग काला है।

इस चित्र में एक घर के अनहोनी हिस्से को दिखाया गया है।

स्टेज के सामने एक टेबल भी रखी हुई है स्टेज के ऊपर बेल चेयर और फैन भी है।

यहां पर बहुत सारा गमला रखा हुआ है।

क्या एक कमरे का दृश है इसकी दिवाली सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

सामने एक बेंच रखा हुआ है उसे सफेद कपड़े से ढक दिया गया है।

पीछे बहुत से डेकोरेट किये हुए है।

मैदान के अंदर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे--

बिल्डिंग में बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

फर्श पर बहुत सारे सामान बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं।